यहाँ पर एक जीप दिखाई दे रही है जो कि फूलो से सज़ी हुई --

एक महिला दिखाई दे रही है और तीन चार खिसल पट्टियाँ दिखाई दे रही है और कुछ लोग खड़े है।